यहाँ पे दीवाल पे अब होगी स्वछता की जीत और अ बिहार लोक सभा आयोग है।

और वर्कआउट करने की मशीन है एक दरवाज़ा लगा हुआ है जिसमे ताला लटका हुआ है और दो एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमे फिटनेस जिम का प्रचार--

और इसके आगे एक ब ब बाइक खड़ी है अपाची और अंदर में एक हम्म सामने एक कार खड़ी है।

और एक बिरिक्ष छे उम् वृक्ष लगा हुआ है और अ का प्रचार किया जा रहा है।

ये ऊपर कुछ हम्म्म्म किताब रखा हुआ है कथा का और गुप्त दान भी रखा हुआ है।

और हरा-भरा जंगल है और बीच में पानी को रिज़र्व करने के लिए बांध भी बंधा हुआ --